यह एक चित्र है चित्र में बहुत बड़ा सा सेलोन नजर आ रहा है और यहां कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।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

और यहां एक ठेला भी नजर आ रहा है जिस पे वह रखी हुई है।

जहां पे तरह तरह की मैगी ए और बहुत सा सामान रखा हुआ दिख रहा है।

और यहां कुछ जीने भी नजर आ रही है।

यह एक चित्र है चित्र है एक शोरूम नजर आ रहा है।

जोकि कुछ मूर्तियों के सामने सर झुका रहे है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक कार नजर आ रही है जो पूरी खराब हो चुकी है।

जिसमें बहुत से कंप्यूटर रखे हुए हैं और पेन भी रखे हैं।

और कुछ गाड़ियां भी लगी हुई दिखाई रही हैं और कुछ बोरिया भी रखी हुई दिख रही हैं।

और यहां छोटे-छोटे गमले भी टंगे हुए हैं दीवार पे और यहां बहुत सी गाड़ियां भी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं।

और यहां कुछ कुर्सियां भी रखी हैं और फुटबॉल भी रखी हुई नजर आ रही है।

और यहां नदी भी दिखाई दे रही है जो की किसी ने अपने हाथ से बनाया हुआ है।

यह एक चित्र हैं। चित्र में मोहन नगर आ रहा हैं और यहाँ बहोत से लोग भीं नजर आ रहें हैं।

इस चित्र में बहुत से लोग नजर आ रहे हैं।

चित्र में एक चर्च नजर आ रहा है जिसमें बहुत से लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक चित्र में इस चित्र में बहोत से लोग नज़र आ रहे हैं और कुछ पटलियां भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक जंगल नजर आ रहा है और साइड में कुछ पाइप किनारे भी दिखाई दे रहे हैं और यहां गांव भी है।

नजर आ रहा है और यहां पे बहुत से घर भी दिखाई दे रहे हैं और यहां कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।